दुकान के अंदर कुछ सामान है दुकान के बाहर एक कुर्सी है जिस पर एक बैग रखा है।

यह एक घर है घर के बाहर रेलिंग है।

यह एक दुकान है इसके ऊपर दया मोटा --

और एक महिला माइक के आगे बैठी है।

कई सारे नाव है पीली सफेद नीली रंग के यहां पे नाव है।

यह एक मिठाई की दुकान है इस मिठाई की दुकान पर --

यह एक रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली है।

दुकान का सेलर यहाँ पर दुकान पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है।

यहाँ पर आदमियों के बाल काटे जाते हैं।

एक आदमी दुकान के बाहर खड़ा है एक आदमी दुकान के अंदर बैठा है।

यह एक मैदान है इस मैदान में --

एक आदमी ई रिक्शा में बैठ उम के बाहर है एक आदमी--

यह एक अस्पताल है इस अस्पताल के ऊपर सदर अस्पताल गोपालगंज लिखा हुआ है।

इमारत का रंग एकदम उद्धस हो गया है ।

यह एक बड़ा सा मैदान है इस मैदान में कुछ घर बने हुए हैं कुछ घर पुराने हैं कुछ घर नए हैं कुछ घर बन रहे हैं।

इस इस्कूल के मैदान में कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं उन्होंने दरी बिछाई हुई है कुछ बच्चे लिखने कुछ पढ़ रहे हैं।

चबूतरा है चबूतरे की बाउंड्री --

गोले कपड़े डिब्बे बंद कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं ।

कुछ सिरप वगैरह हैं कुछ सॉस वगैरह यहां पर मौजूद हैं।

यह एक नदी है नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं कुछ इमारतें बनी हैं।

यह एक रूम है इस रूम में लोहे की अलमारी है अलमारी के ऊपर कुछ सामान है।

कुछ किराने की दुकान है जिसपे ऐ वन ऐन ज_ब पार्लर लिखा हुआ है।

ये बड़ा विशालकाय मंदिर है मंदिर के चारों ओर हरियाली है।

एक चेयर है एक सफाई कर्मचारी पार्क की सफाई कर रहा है चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं।

यह एक कार पार्किंग है इस कार पार्किंग में बहुत सारी लाइट लगी हुई है बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

यह एक नव निर्मित बिल्डिंग है बिल्डिंग के चारों तरफ रेत फैली है।

यह एक स्टडी रूम है यहां पर अलग-अलग रैक बने हुए हैं।

बिजली का खंबा गया है छोटे और बड़े बहुत सारे पेड़ यहां पर मौजूद हैं।

अन्य तरह के डस्टबिन वगैरह बहुत सारे समान हैं।

इस शॉप के चारों तरफ बैलूंस लगे हैं।

कुछ टायर पड़े हैं एक बाइक है।

दीवाल पर एक पोस्टर लगा हुआ हैजिस पर कुछ चिपका है।

इस मकान के पास में दो दुकानें हैं एक दुकान खुली है एक बंद है।

यह एक गैरेज है इस गैरेज में--

एक मैकेनिक गाड़ी बना रहा है दुकान में बहुत सारे सामान है।

यह शॉप है शॉप के ऊपर पतंजलि जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

मैदान के किनारे सफेद रंग की बिल्डिंग है।

कुछ कुर्सियां और टेबुल यहां पर पड़े हैं जो खाली है।

इस गेट पे एच_एल सिटी लिखा हुआ है गेट के किनारे पेड़ पौधे हैं और एक ट्रक बाहर खड़ा हुआ है।

बड़ा सा एक सोफा है सोफे के बीच में सेंटर टेबल है दो काउच रखे हैं।

कुर्सी पर डॉक्टर बैठा है उसके सामने--

नीले और सिलेटी रंग की चादर बिची है सफेद रंग की तकिया है रजाई है।

यह पार्क है इस पार्क में बहुत ही सुंदर-सुंदर से फूल हैं पीले लाल--

यह एक सफेद रंग की बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है।

यहां पर पिकअप माजडा आईसर जैसी गाड़ियों का काम बहुत तसल्ली से किया जाता है।